यहां पर बहुत सारे पोल भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर बहुत सारे बैलून भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बैलून अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं यहां पर हेल्थ केयर की शॉप दिखाई दे रही है।

ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है ग्राउंड कच्ची मिट्टी का दिखाई दे रहा--

यहां पर फुल अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं।